और गा- गामले वगैरा भी लगाए गए हैं जिससे इसकी सुंदरता भी और चार चांद लग गए हैं।

हारमोनियम गिटार वादक भी दिख रहे हैं और सामने कुछ लोग पीछे खड़े हुए भी दिख रहे हैं।